स्टब्बड़ शर्ट पहन रखी है इन आदमियों के पीछे लकड़ी के रैक बने हुए दिखाई दे रहे है इन पर काफी खंधे बने हुए है इन खंधो में कुछ किताबे रही हुई नज़र आ रही है एक आदमी ने चश्मा लगा रहा है।

बिल्डिंग के बाहर कुछ लोग एक चबूतरे के ऊपर मोमबत्तीयां जलाते हुए नजर आ रहे हैं बिल्डिंग के बाहर एक बड़ा सा हरा पेड़ है जिसपे हरे रंग की लाइट लगी हुई है इस बिल्डिंग के अंदर एक स्टार लाईट भी दिखाई दे रही है जो कि लाल रंग की है।

इन मूर्तियों पर काफ़ी ज्यादा फूल मालाये चढ़ी हुई नज़र आ रही है इनमे से बीच वाली मूर्ति थोड़ी ऊंची दिख रही हैं जिसमें गुलाबी रंग का मुकुट पहन रखा है ।

और दोनों तरफ की मूर्तिया भी छोटी छोटी दिखाई दे रही है।

रोड के किनारे खाली जमीन पर बैठा हुआ नजर आ रहा है रोड पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं और एक बड़ा सा रोड का बोर्ड भी लगा हुआ नज़र आ रहा है एक वेटिंग एरिया भी दिखाई दे रहा--